यहाँ पर कई पुस्तके रखी हुईं है। कुछ पुस्तके स् न् भगवान की भी है रखी हुयी है। एगो छ --

यह है और यहाँ रेड व्हाइट पिंक कलर के फुल रखे हुए नीचे लाइन से बहुत सूंदर --

बोहोत अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पानी पानी नहीं जाता --

यहाँ तीन रंग की बॉल रखी हुई है कुछ बैट रखे हुए हैं बॉल के साथ ही तीन रंग की बॉल है दो व्हाइट कलर की हैं एक रेड कलर की है।

दो शेरवानियां और एक जैकिट रखी हुई है। शेरवानी या दो बहुत सुंदर है जैकेट भी बहुत सुंदर है और एक टेबल कुर्सी रखी हुई है वहाँं पर जो देखने में बहुत सुंदर शेरवानी लग रही है। कुछ लाइट जल रही है वहाँं पर।

यहाँ पर कुछ ऑटो खड़े हुए हैं और एक ऑटो के पास एक इंसान खड़ा हुआ है और एक लड़का जा रहा है। छाता टंगा हुआ है। इधर एक पेड़ है बड़ा सा। कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं साइड में।

वह एक बिजली की लाइट का तार खंभा बड़ा खंभा है। कुछ पेड़ - पौधे भी हैं पास में उसके और एक --

मूर्ति मूर्ति के बोहोत सारे पेड़-पौधे हैं छो बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी हैं कुछ छोटे पेड़-पौधे हैं।

घर क ऊपर से सीढियाँ जा रही है और कुछ पेड़ पोधे बड़े बड़े जो देखने में दूर से बहोत सुन्दर लग रही है कुछ एक मन्दिर बन रहा है छोटा सा--

यह किराने की स्टोर है स्टोर है यहा पर कुछ सामान रखा हुआ है कुछ --